बगल में लेडीज है एक मूर्ति है और नीचे बहुत चप्पल रखे हुए हैं एक सीढ़ी --

इसमें बहुत ही लम्बा-चौड़ा एक मंदिर है उसपे पौधे हैं पीछे सामने एक पिलर है।

इसमें एक हॉल है एक लाइट है बहुत सारा नीचे टाइल्स लगा हुआ है एक सीढ़ी है और एक लाल कलर का कुछ रखा हुआ है।